ब्लू कलर के कोट मे एक अंकल खड़े है जिन्होंने ग्लासेस वाला चश्मा लगा रखा--

मार्केट है मार्केट मे कुछ लोग आह कुछ कट करते हुए दिखाई दे रहे है पीछे थोड़ा ब्लर है इसलिए समझ नहीं आ रहा है क्या कट हो रहा है पीछे हरे कलर कि टंकिया रखी हुई है और मार्केट मे बहुत भीड़ है ।